पीछे की तरफ व्हाइट कलर की पन्नी लगी है।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

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस बिल्डिंग का कलर ग्रे --

उसके दरवाजे का कलर क्रीम है छत का कलर चॉकलेटी है।